यह एक दुकान है दुकान के अंदर बहुत सी कुर्सियां रखी हुई हैं।

और पीछे एक लोहे का गेट भी है।

अउर कमरे की छत पर पंखा लगा हुआ है।

और नीचे एक बोर्ड लगा हुआ है जो कि सफेद कलर का है।

और कुछ व्यक्ति बैठे दिखाई दे रहे हैं।

यह एक बहुत सुंदर घर है।

स्कूल पर पीले कलर का पेंट हो रखा है।

रास्ते में बहुत सी बाईकें खड़ी हुई है।

दुकान के अंदर एक स्टूल रखा हुआ है।

कमरे के अंदर सफेद कलर का पेंट हो रखा है।

और साइड में एक मेज रखी हुई है।

अउर दुकान के अंदर एक महिला बैठी हुई है।

यह एक बहुत सुंदर दुकान है।

दुकान के अंदर बहुत से बेड की गद्दे रखे हुए हैं।

और ऊपर एक बोर्ड लगा हुआ है।

रोड पर दो भैंस और एक औरत दिखाई दे रही है।